सफ़ेद और ब्लैक कलर में इसका मुँह है वो सफ़ेद कलर में है और ये घास में बैठा हुआ है हरी भरी घास चर रहे है।

यह बावड़ी है सूखी हुई बावड़ी जिसमें पानी नहीं है बावड़ी सूख चुकी है इसमें कुछ पानी है जो भी गंदा हो गया है और इसके सामने एक जस्ट छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।